मंदिर की दीवार पर बड़ा सा ओम लिखा हुआ है।

उसने चॉकलेटी का कोट पहना है।

जिसमें कॉफ़ी भरी हुई है।

और पीले रंग के कपड़े से सजाया हुआ है।

और नीचे सफेद रंग का प्लाई लगा हुआ है।

सामने तस्वीर में हम वॉशरूम में लगने वाले नल सिंक वगैरा की दुकान की तस्वीर देख रहे हैं।

यहां पर बोहोत सारे अलग अलग तरह के न नल लगे हुए हैं।

ऊपर हम एक शिक्षिका को माइक में कुछ बोलता हुआ देख रहे हैं।

जिसमें दो आदमी बैठे हुए हैं।

सामने तस्वीर में हम एक किले की तस्वीर देख रहे हैं।

सामने तस्वीर में हम एक दुकान की फोटो देख रहे हैं।

हम यहां एक आदमी को स्कूटर पर बैठे हुए भी देख सकते हैं।

इन आदमियों के पीछे देवी देवताओं की मूरत भी रखी हुई है।

सामने हम कांच के कवड में बहोत सारी बंदूक देख सकते हैं।